यहाँ पे यहाँ पे देख सकते है पेड़ है बहुत सारा एक स्‍कूल है ग्राउड अ यहाँ पे ग्राउड खेलने के लिए प्ले स्‍कूल भी है।

और जंगल झाड़ी थोडा कुछ ज्‍यादा ही है।

और अच्‍छा है यहाँ बड़ा-बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है प्‍लेग्राउण्‍ड साइड में ऊपर से रास्‍ता भी है जाने के लिए सीढ़ी प्‍लस बड़ा-सा स्‍कूल है खिड़की लगा हुआ है।

एक बिल्डिंग है साइड और इसके साथ बहुत नीचे में पार्किंग एरिया में बहुत सारी गाड़ी लगा हुआ है।

ये पार्क जाने का रास्‍ता है बीच में पेड़ का बना हुआ गेट है जो की अंदर जाने पे भी वैसे ही पेड़ का बना हुआ गेट है।

सामने से रास्ता है ये नर्सिंग होम है साइड में कार भी लगी हुई है औरअच्छा बड़ा-सा नर्सिंग होम है।

ये ए सामने दो बिल्डिंग है बाहर में बोहत सारी बाइकस लगी हुई है एक बूढ़े अंकल हैं जो कि रोड लेकर चल रहे हैं एक बाइक चला रहे हैं और साइड में --

और यहॉं साइड में भी दो-तीन और लोग है जो कि खड़े है।

और ये ये बगल में उसका मशीन इस सब के लिए भी है।